एहा ईसाई यो समाज का कुछ प्रोग्राम होने वाला है और यहाँ पर अच्छे सफ़ेद कपडे भी पहने हुए चश्मे भी लगाए हुए टोपी भी लगाए हुए ।